ग्यारा डी न्यूज़ नाइन डी ग्लास ज़ेड ग्लास रियलमी ऐसे समझ नही आ रहा क्या है की एक टीसीएन दुकान है कांच की दुकान है बगल में विवो का भी दुकान खुला हुआ है ।

और दो गाड़ियां है। स्कूटर है और दो पिलरस काफी ठीक हालत में लग रहा है। बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं हो सकता है। अच्छा हो बाकी और कोई दिक्कत --

यह किसी स्टेडियम का सीन लग रहा है या तो कोई मैच जीत गया है या फिर लड़ाई वगैरह हुई है जिससे लोग आगे आक्रामक हो गए हैं ब्रेनच पर लोग खाली से लग रहे हैं।

वो एक बॉल भी डली हुई है जिससे पानी आता जाता रहता हैं। यहाँ पे आस-पास पहाड़ भी हैं। देखने पर कितने पहाड़ हैं।

यहाँं पर चाय रखी हुई है। चाय है या काफी है समझ नहीं आ रहा। इसमें दो चम्मच डली है। एक चम्मच कप के अंदर है एक चम्मच कप के बाहर है।

यहाँ पर कोई टेबिल रखी हुई है जो पढ़ने लिखने के काम आती है। हरो नीलो सफेद सफेद रंग की टेबिल है।

बहोत ही सुंदर बगीचा नहीं ये किसी की समाधी स्थल समझ में आ रहा है। रंग-बिरंगे --

दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। यही गाड़ी मुझे भी खरीदनी है और ये हेलमेट रखा हुआ है शायद किसी का। हरियाली पीछे के पहाड़ देखने में बहोत सुंदर लग रहे हैं। धन्यवाद!